यहाँ पर तीन फोटो भी है। यहाँ पर एक रैक भी है।

यहाँ पर काफी सारे बच्चे एवं आदमी घुमने भी आते हैं।

यहाँ पर अनेक प्रकार के कुर्सी भी लगाए गए हैं। यहाँ पर काफी सजावट भी की है।

यह स्टेज को कपडे एवं लक्ली से बनाया गया है|

यहाँ पर अनेक सारे कुरियर आते --

इस घर में बहुत सारे कमरे भी हैं।

इस सड़क पर बहुत सी गाड़ी आती जाती है।

यहाँ पर काफी सारे गाड़ी आती एवं जाती हैं।